ऊपर और भी सामने की तरफ और भी सामान रखे हुए हैं | काम चल रहा है यहाँ पे फिलाल |

आखिरी छोर का पता ही नहीं चल रहा है इत्ता अंदर गया हुआ है |

इस इमेज में हमे टोल नाका टोल टेक्स दिखाई दे रहा है टोल जो नाका होता है।

अंकित में और दुकान दिखाई दे रही हैं | लाइन से लगी हुई हैं |

एण्ड प्राइवेट ये प्राइवेट बैंक है। सभी लोग इसे जानते हैं एण्ड सामने बोहोत सारी बाइक --

बहुत ही बड़ा में बना हुआ है। यहाँ चैनल भी खुला हुआ है।

फुटपाथ जैसा दिखाई दे रहा है | वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई है |

यूपी ग्रामीण बैंक है नीचे।

ज्यादा कुछ दिखे नहीं जहां रिक्शे खड़े हैं वहाँ बस लाइट दिखाई दे --

तार निकला हुआ बिजली का --

पर्सन खड़े हुए हैं। कार में कुछ लगा रहे है वो।

दिख है ग्रससेस दिखाई दे रही है जमीन पे नीचे ग्रीन ग्रीन --

सामने की तरफ घर बने हुए --

कुछ वर्क्स कर रहे हैं कुछ लिख रहे हैं।

गार्डन भी दिख रहा हैं। यहाँ पे --

यहाँ एक मंदिर है। मंदिर में रेड कलर पुता हुआ है। क्रीम कलर पुता हुआ है टाइल्स लगी हुई है यहाँ।

शायद यहाँ पे कुछ प्रोग्राम बगेरा है।